सोने की थाल सोने के कशखोल सोने की चीजें उठाए हुए सोने के बने हुए कमरे में सोने की --

पीले रंग के गुब्बारे लगे हुए है।

आदमी बैठे-बैठे अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं एक आदमी दूसरे की बना रहा है तीसरा आदमी चौथे की बना रहा है।

दिन का मंजर है सब लोग अपने कामों में मसरूफ है अलमारत पे भी धूप पड़ रही है।

ताजी मछलियां समुंदर से निकाल के जाने के बाद इसको एक डब्बे में डाल रहे हैं।

सफेद गुलाबी पीले और लाल रंग के फूलों से ये सजावट हुई हुई है ये फूल बहोत अच्छे लगते हैं ऐसा लगता है कि ये फूल बहोत खुशबूदार होगी।

ये दाएं-बाएं आगे-पीछे हर जादीब कुर्सियाँ लगी हुई हैं।